क्या आपको एक शॉप दिखाई दे रही है? जो शॉप के बहार एक स्कूटर खड़ा हुआ है| स्कूटर के पास दो बाइक खड़ी है| देखिये की दो आंटी भी है| देखिये यहाँ पे जो पूरी वाल है वो रेड कलर की है और वाल अ जो शॉप है| उसके अंदर सामान रखा हुआ है।

देखिये आपको गत्ते दिखाई दे रहे होंगे और एक बाईक पे अंकल होंगे।

इस पिक्चर में देखिये आपको कुछ पेड़ देखाई पड़ेंगे| और राइटे और लेफ्ट हैण्ड साइड पे | और देखिये यहाँ पे कुछ चादर पड़ी हुई है और चादर बहुत ही अच्छे लग रही है| यहाँ पे थोडा कूड़ा भी पड़ा हुआ है| यहाँ की जो टाइल्स है वो वाइट कलर की है।

यहाँ पर देखिये बहोत बड़ी नदी दिखाई दे रही है| नदी के इस साइड देखिये तो आपको छोटे छोटे स्टूल दिखाई देंगे | नदी के पास नदी के बिचो बीच देखिये एक बैठने वाली होड़ी बनी हुई है| और देखिये नदी के थोड़ा सा आगे आयेंगे तो आपको एक वाइट कलर का मन्दिर दिखाई देगा।

नदी का चित्र दिखाया गया है| यहाँ पे देखिये एक खम्भे में एक बांस में एक लाल कलर का अ कपड़ा बाँध के खड़ा कर दिया है| नदी के उस पार देखिये उस पार देखेंगे तो आपको एक ट्रांसफार्मर दिखाई देगा | और नदी बहुत ही बड़ी है।

देखिये आपको मंदिर दिखाई पड रहा है| देखिये मंदिर में सब से ऊपर झंडा लगा हुआ है| झंडा के ऊपर एक मरकरी लगी हुई है| यहाँ पर देखिये जो पूरा मदिर है वो ऑरेंज कलर का है| यहाँ पे जो बॉर्डर दिया गया है वो वाइट कलर का है| यहाँ पे जाल का दरवाजा लगा हुआ है।

उपर देखिये जो वालस का कलर है वो ब्राउन कलर का है| ये बहुत ही अच्छे से सजाया गया है| यहां पर लाइट की डेकोरेशन की गई है| यहां पे और कुछ प्लांटस भी गमले लगे हुए हैं| उसके निचे देखिये तो आपको कुछ फ्लावर्सस से डेकोरेशन दिखाई जायेगी | में और व्हाइट और रेड कलर की कर्टेन भी लगे हुए हैं बहुत ही सुंदर लग रहा है यह देखने में ये घर।

यहां पर देखिए आपको रेड कलर की टेबल दिखाई पड़ रही है| टेबल के ऊपर दो सॉस की बोतल रखी हुई है एक ग्रीन और रेड कलर की है| यह देखिए नमक का नमक का पैकेट रखा हुआ है।

यहाँ पर देखिये आपको एक ठिलिया दिखाई देगी| ठिलिया मे देखिये कुछ टमाटर रखे हुए है | यहाँ पे एक बाइक है और देखिये साइकिल भी खड़ा हुआ खड़ी हुई है| ये देखिये जो ये दरवाजा लगा है देखिये गेट के उस साइड पे देखेंगे तो आपको एक कार दिखाई दे--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

पिक्चर में देखिए आपके पेड दिखाई दे रहे कुछ अगल बगल| देखिये सेंटर में भी आपको जो पार्क बना है वह पे भी कुछ छोटी-छोटी घास दिखाई दे रही है| जो बॉर्डर बना है वह रेड कलर का और जो पूरा घर बना हुआ है ये भी पूरा रेड कलर का है| और यहां पे कंकड़ अंकल खड़े है।

यहा पे देखिये आपको बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा होगा | यहा पे देखिये एक अंकल भी है और यहा पे जो वाल बनी हुई है बाहर यहा पे देखिये वाल पे बहुत सारी पेंटिंग बनी हुई है।